सभी लोग दिखाई पड़ रहे है यहाँ पे इन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे है यहाँ पे साइड में दो लेडीज जेंट्स खड़े हुए हैं।

सामने कुछ प कुर्सियाँ रखी हुई है जोकि रेड कलर में दिख रही है ऊपर कुछ पिंक कलर के पर्दे जैसे लगे हुए है पीछे कुछ खिड़कियाँ दिखाई पड़ रही है पीछे दीवाल ग्रे कलर ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रही है यहाँ पे ग्रीन कलर के पर्दे लगे हुए दिखाई पड़ रहे है यहाँ पे एक माइक रखा हुआ दिख रा है नीचे एक पिलो जैसे --

ऊपर आसमान में सुरज चमक रहा है जो कि येल्लो रंग में दिखाइ पड़ रहा है यहाँ पे साइड में कुछ मिट्टी के टीले जैसा दिखाइ पड़ रहा है यहाँ पे सामने बहुत सारी मिट्टी दिखाइ पड़ रही है जो कि ब्राउन कलर में दिखाइ पड़ रही है पीछे और भी बिल्डिंग जैसा--

यहाँ पे सामने एक लंबी सी लाइन लगी हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे एक लेडी ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए है। यहाँ पे सामने कुछ बाइक खड़ी दिखाई पड़ रही है।

एक बॉय दिखाई पड़ रहा है और उसने ये ब्लैक कलर का लोअर पेहना हुआ है यहाँ पे सामने नीचे ब्लू कलर का कारपेट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे बहोत सारी मशीने दिखाई पड़ रही है।